ये लड़के सेल्फी ले रहे है और सामने ही बॉडी बिल्डर का पोस्टर --

सामने की ओर देख रहा है टेढ़ी नज़र करके गले में गोब डाले हुए है एक लॉकेट डाले हुए है।

सामने एक बहोत सारी बड़ी -बड़ी मछलियाँ रखी हुई दिखाई दे रही है जिनको लाइन के लाइन बार जमाया हुआ है।

और साथ ही ये लोग माक्स लगाए हुये है अलग दिखाई दे रहे है सामने की दीवार पे स्कैनर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

बहुत से आदमी एक दुसरे को देख रहे है साथ ही लोग आपस में बात कर रहे है।

सामने ही बुको का लैब दिखाई दे रहा है जहाँ बहुत सारी बुके ही बुके नज़र आ रही है और --

सामने एक आदमी अपनी बॉडी बताते हुए सामने की ओर फोटो निकालता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जहा आप पास बोहोत सारी भीड़ नज़र आ रही है सामने एक हाईवे दिखाई दे रहा है जो कि इस रोड के ऊपर बना है।

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही ऊपर का आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है बहौत सी औरतें सामने की ओर आते हुए नज़र आ रही है।

एक लड़का अभी जाते हुए नजर आ रहा है जिसने सफेद कलर की शर्ट पहन --

सामने ए_टी_एम एक बैंक का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने एक दीवार दिखाई दे रही है लाइट पिंक कलर की सामने बहुत सारी मोटर साइकिल खड़ी हुई है दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

एक आदमी सामने की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो की मोबाइल फोन चला रहा है।